गुलाबी और सफ़ेद है वही एक आदमी भी खड़ा है।

यह एक घर बन रहा है। जिसकी दीवाल अभी अंधेरी है। वह बहुत सारे लोग खड़े--

एक ट्रेन च्या पटरी पर चल रही है जिसका रंग नीला और काला --

काला है नीचे लकड़ी के सामान पड़े हुए है जिनका रंग सफ़ेद काला और भूरा है।

ये एक दुकान है जिसके अंदर एक काँच मे तीन कपड़े रखे हुए है इन कपड़ो का--

सामग्री राखी हुई है उनके रंग विभिन्न-विभिन्न है यहाँ बहुत सारे डिब्बे है जो प्लास्टिक के है।

केक का रंग गुलाबी और पीला है और नीचे बहुत सारी कुल्फी भी रखी हुई है उनका रंग सफ़ेद है।